आगे एक आदमी भी खड़ा है गुलाबी कलर का शर्ट पहने।

पीले कलर का पूरा कलर से पेंट किया गया हैं घर--

कुछ लरी बत्ती भी लगे हुए हैं होटल है होटल का नाम मां मुंडेश्वरी इंटरप्राइजेज है।

किसी का बर्थडे बर्थडे की पूरी तैयारी हो चुकी है।

एक दुकान है दुकान का नाम विजय पुस्तक भंडार है।

बहुत बड़ा तालाब है एक पाइप है जिसके द्वारा पानी गिर रहा है पोखरे पानी भर जा --

कुछ दुकाने का नाम अल्पना अलंकार ज्वेलरीज कुछ एस_के इंटरप्राइजेस के नाम से बने हुए हैं रात का समय है बाहर बल जल रहा है।